कोई स्ट्रॉबेरी में है कोई चॉकलेट में है कोई वैनिला में है।

डैम पर बहुत गंदगी जमी हुई है डैम का रंग स्लेटी है।

दृश्य में सामने एक अलमारी है जिसमें कई प्रकार की किताबे रखी है।

एक आदमी खड़ा है जो कुछ कर रहा है जो गुलाबी रंग की टी शर्ट पहने--

इस दृश्य में फूलों की दुकान है जहां एक औरत खड़ी है जो कुछ कर रही है।